तराजू इस समान को तौलता है | ऊपर एक मीटर लगता है उस से बता देता है कि कितने वजन का सामान --

ए गेंदे के फूल लड़ियो से उसे डेकोरेट किया गया है। इसे गोपालगंज में ये सैलून है और देखिए यहाँ पे ए एसी की सुविधा भी है |

बस देखिए मिट्टी भी लपेटी हुई हैं।

और यह देखिये बड़ा सा जिराफ़ भी बना हुआ है और देखिए ये जो - जो सामने का रास्ता दिखाया गया है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और देखिये बाहर से --

ये देखिये सनी बुक सेंटर है |

बैठ के देख सके और ये बोहत अच्छी तरह से --

और देखिए एक गेट का खुला हुआ है।

सूर्य नमस्कार करते हुए पोज में है।

बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं।

साथ मै पंडित है उसको बतला रहा है | वैसे महिला भी तीन खड़ी हैं दो बैठी हैं| ए --

कॉलेज जैसा लग रहा है | देखिये दो मंजिलें हैं |

और देखिये यह मशीन टाइप का कुछ --